और खान कुछ लोग खाना भी खा रहे है।

पीछे केले के पेड़ भी दिख रहे हैं।

और एक आदमी फोन पर बात कर रहा है।

पहाड़ का दृश्य है जहाँ से झरना बह रहा है।

और सामने की तरफ एक पुरानी--

दुकान का नाम सात्विक एंटरप्राइजेज है।

यहां कांच का गेट लगा हुआं हैं।

और पौधे भी छोटे छोटे लगे हुए है।

जहां टेबल पर लैपटॉप रखे हुए हैं।